तीन लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हमें पेड़ नजर आ रहे हैं।

देखने पर हमें ये कोई बिल्डिंग स्लैट लग रही है।

इस पिक्चर में हमें--

ग्लासीस भी नजर आ रही हैं।

इस पिक्चर में हमें एक लड़की दिखाई दे रही है।

यहां पर हमे ग्रीन बोर्ड पर--

एक छोटा सा तलाब दिखाई दे रहा है। यहां पर हमें--

में हमें डेयरी दिखाई दे रही है।

बाल्टीयो में दूध डाल डाला हुआ--

पेड़ पौधे लगे हुई दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमे ग्रीन बोर्ड पर--

यहां पर हमें एक ब्रिज जैसा--

इस पिक्चर में हमें कुछ बच्चे परफॉर्मेंस --

राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल है।

पिक्चर में हमें हैंड्स दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं।

कोकोकोला कोल्ड ड्रिंक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।